और दो ठो नाव भी है।

ये बहोत बड़ा फिल्ड है।

रेनबो भी है।

पीछे मे बड़ा सा घर भी है।

एकदम बड़ा करके नोटिस बोर्ड भी है।

बरांडा में दो ठो इंसान चढ़ के है।

घर जो टीना से बना करके है।

ये पान करने वाला दुकान है।

दुकान जो फून से सजा कर के है।

और एक ठोकर भी है।

बहोत जरा सोफा भी है।

और तीन ठो आरमी है।

और पोस खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे है।

और चर्स के आगे में फुल लगाके है।

और जो कारपेट से लगा कर के है।

यहां में चार ठो रूम है।

में एक ठो लड़की भी है।

यहां में बहुत ज्यादा पेड़ लोग भी है।

और एक्टिव फ्रिज़ भी है।

ये एक बुक का दुकान है।

रस्ता का सामने में पेड़ लोग भी है।

ये एक बाईसाइकिल का दुकान है।

और बिल्डिंग का आगे में बहुत ज्यादा कार लोग भी हैं।

और दुकान लोग भी जा रहा है।

और ऊपर में जो क्रोस लगा करके है।

अलमीरा लोग भी हैं।

बाहर में बहुत जरा साइकल है।

और इंसान लोग भी बहोत जा रहा है।

और फेंसिंग भी लगा कर के है।

पीछे में बहोत ज्यादा फैन भी है।

र एकथो ऑटो ररिक्शा है वहां में बहुत ज्यादा सामान लोड करके है।

ए एक्स रे मशीन है।

व इनवर्टर भी है।

और जो सीमेंट बालू से घर बना करके है।